आप देख सकते हैं कंपनी इसमें पलाई रखा हुआ हर रकम के पलाई मिलता है यहाँ।

आप यहां पर देख सकते है मगल लाइट है झूलवा है इधर सामान वामान की दुकान उकान सब कुछ लगा हुआ है।

केमरा लगा हुआ है पंखा लगा हुआ है हर लगा हुआ है इधर टेबुल लक्खा हुआ है हल चीज रक्खा हुआ है आप देख सकते यहां पर।

इलेक्ट्रिक सामान दुकान है उसमें कुलर मिला जाता है पंख मिला जाता है।

सब यहां बच्चा के खाने के लिए मजबूत है लाइट लगा हुआ है इधर बिस्कूट है हर सामान आपको मिलेगा बच्चा का--

आप देख सकते हैं एजेंसी में से एक टोटो निकाला हुआ है आंटी--

लाल गाड़ी हैं और एक आंटी लाल साड़ी पहनी हुई हैं एक अंक खड़ा है एक आदमी उसका चाभी दे रहे है एजेंसी हैं सब कुछ--

चिड़िया खाना घर है यह गार्डन है पेड़ है घर है।

आप देख सकते हैं एक स्टूडियो है गाना गाने वाला माइक रखा हुआ है।

आप देख सकते हैं यहां कोई घर है शायद गाड़ी लगा हुआ है।

खेलने के लिए जिम लगा हुआ है और घर है गेट है बहोत ऐसे सामान है यहां पर आप देख सकते हैं।

नींबू है तरबूज है नारस है तराजू है ठेला पे रखा गया हुआ है।

गाड़ी की दुकान बढ़ाने का है और यहां गाड़ी बनता है धुलाते है सब--